टीन रखा हुआ है तेल वाला फैक्ट्री है।

इस तस्वीर में सगरो धान का खेत लउक रहा है ये एक रोड है।

इस तस्वीर में बहुत सारा आदमी लोग खड़ा है।

तस्वीर में सामने तीन चार आदमीन हैं।

जो रंग बिरंग का लाइट जल रहा है।

बनाया गया है पीला कलर का।

रेड कलर का नीचे सीढ़ी है।

येल्लो कलर का जे_सी_बी है और एक ट्रक जा रहा है।

एक आदमीन सामने लेडीज़ बैठी हुई है बाकी आदमीन हाथ जोड़ के बैठे है।